यह एक रूम है जहाँ पर हम लेटते हैं और अपनी नींद पूरी करते हैं जिससे हमारी नींद पूरी होती है।

यह बहुत सारे बच्चे सभी लोगों के साथ बड़े ही आनंद से खेल रहे हैं।

यह एक प्रकार का पौधा है जिसे मनुष्य तोड़ रहा है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए यह तोड़ रहा है।

यह एक काऊ है जिससे हमारे बच्चे दूध पीते हैं और अपना शरीर स्वस्थ रखते हैं। हमें गायों को मारना नहीं चाहिए।